यहा पर एक महिला है यहा पर एक बच्चों को खेलने के लिए एक घसरगुंडी लगाई है। वहा कुछ सिडिया दिखाई दे रही है आगे की तरफ मिट्ठी है वहा --

यहाँ पर एक मैदान है जहाँ पर बहुत सारे बकरिया दिखाई दे रही है वहा एक बेंच लगाए गए है बेंच के अन्दर उनके खाने के लिए कुछ डाला हुआ--